यह एक रोड है किसी पहाड़ की रोड है छोटी सी सिंगगल गली है जहा पे खूब सारे नारियल के पेड़ है पीपल के पेड़ भी है छोटा स पुल बना हुआ है और एक लम्पू-रोड लाइट लगी हुई है।

ये कोई होटल या हॉस्पिटल है जहा सारे पंखे ऊपर लगे हुए है रीसेप्शन पर मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है।

ये एक मुर्गी खाना है जहा काफी संख्या मे मुर्गियों को बंधी बना कर पिंजरों मे रखा गया है और उन्हे लगता है काटने के लिए तैयार किया जाएगा अब।

ये एक मिठाई की दुकान है जहां काफी तरह की मिठाईयां है।